संगीत की प्रैक्टिस की जा रही है।

ग्राउंड में बच्चे खेल रहे हैं और झूला झूल रहे हैं।

इसमें हम देख पा रहे हैं यहां दो बेड लगी हुई है।

और कोई नजर नहीं आ रहा है और बाहर में--

उसके सामने तीन युवती भी माउंटेन क्लाइंब करते हुए नजर आ रही है।

इसका नाम बी_आई_टी कौन है।

जहां पे कंप्यूटर पढ़ने के लिए--

यहाँ पे काफी पेड़े बी है और हरियाली बी हैं।

यह नजारा हमें किसी अंडर कंस्ट्रक्शन साइट का नजर आ रहा है जिसमें की गड्ढा खुदाई हुआ है।

प्ले कोर्ट का नजर आ रहा है जहां बच्चे बैडमिंटन खेलते हैं।

ताकि उनका मनोरंजन होता रहे और काफी सारे लाइटिंग भी लगी हैं।

और यह नजारा देख के मन मोह मोह हो गया।

यह नजारा हमें कोई शोरूम का नजर आ रहा है।

और एक सड़क भी गया है और बाहर गाड़ियां भी पार्क हुई है।

यहां हमें काफी साफ सुथरा टाइल्स दिखाई पड़ रहा है।

और बच्चे खेलकूद करने आते हैं।

शिव का दिखाई पड़ रहा है।

और काफी हरा भरा घास है और जाली में बंद है और बहोत ही सुंदर नजारा हैं।

जो की लाखों में बिकता हैं और इसमें बैटरीयां भी लगी होती हैं।

यह नजारा हमें किसी अस्पताल का दिखाई पड़ता है।

और बहुत सारे पक्षी चिलचिलाते हुए नजर आ रहे है।

बहुत सारे पेड़े थी मौजूद है।